बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ड्राइंग बना रहे हैं।

गुलाबी कलर का रखा है फिरोजी कलर का है।

एक जीप खड़ी हुई है।

और सामने दो आदमी जा रहे हैं और आगे बहुत बड़ा ग्राउंड है साइड में दो पेड़ लग रही है।

कुछ लड़के बैठे हुए हैं और दो लड़के खड़े हुए हैं।

ये एक चित्र है चित्र में बहुत बड़ा ग्राउंड है।

मैच खेल रहे हैं और बहुत से लोग बैठे हुए हैं।

ये एक चित्र है चित्र में--

एक गाड़ी खड़ी हुई है।

हाल में कुर्सी टेबल रखे हुए हैं।

जैसे के शिमला मिर्च--

चित्र में तीन घर बने हुए हैं।

ये एक चित्र है चित्र में बैंक --

बैंक क्रीम कलर की पुती हुई है।

चित्र में बहुत बड़ी हॉटेल है।

वहां पर मौजूद हैं और वहां शायद कपड़े बिक रहे हैं।

और शॉप में बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं जिओ --

एक कार खड़ी हुई है और बहुत सारे लोग--

एक हरे कलर की एक मेहरून कलर की।

चार कलर की साड़ियां रखी हुई हैं।

एक फंगक्शन हो रहा हैं क्रिसमस --

यह एक चित्र है चित्र में--

चित्र में स्विंग पूल बना हुआ है।

ये एक क्षेत्र है क्षेत्र में बहुत बड़ा रोड है रोड के साइड में --

चित्र में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है।

ज्वेलरी बिक रही है।

और सब लोग डांस कर रहे हैं और दो-तीन बल्ब लगे हुए हैं।

और तीन गिलास रखे हुए हैं एक आदमी बैठा हुआ है।

और तीन लोग खड़े हुए हैं।

और तीन दिए लगे हुए हैं।

चित्र में बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है।

पार्क में घर बने हुए हैं साइट में--

दीवार उठी हुई है और फिरोजी कलर की बाउंड्री है और नीचे कुर्सियाँ रखी हुई हैं लकड़ी की --

घर के सामने स्विमिंग पूल है।

ये एक चित्र है चित्र में--

ब्लू कलर की नीचे कच्ची जमीन है।

एक साइकिल भी खड़ी हुई है।

और व्हाइट कलर की कुर्सियां हैं बहुत सारी और एक पंखा भी लगा हुआ है।